काफी सारे लोग हैं जो काम कर कर रहे हैं।

आदमी का फेस हाइड किया गया है।

यह एक क्लास रूम है।

यह काफी बीर बारी वाली जगह है।

ये एक सैलून है।

आ करवाना अपने देह को आराम देना।

ये यहाँ पे ये दो ए_टी_एम हैं।

उसके बगल में अंडा है।

उसके बगल में सेब रखा गया है।

ये काफी सुंदर दिख रहा है।

और दो बाहर बाइक लगा है।

एक काले कलर का ग्रीन कलर का गेट है।

ये एक सुंदर दृश्य है।

ये एक रात्रि का समय है।

बस की इंतजार में लोग बात चीत करते हुए बस की इंतजार कर रहे हैं।

बगल में अशोक का पेड़ है।

सामने एक बढ़िया सा घर है।

और ये एक अद्धभुत दृश्य है।

यह एक डेल का शोरूम है।

यह अशोक लीलैंड का एक शायद मैकेनिक शॉप हो या एक शोरूम हो।

और सामने रोड है और उसके बगल में एक ट्रांसफार्मर है।

एक सैलून है यहां पे फूल टंगे हुए हैं।

सूर्या का बल्ब है।

ये एक लाल कलर की दरवाजा है।

ये एक बालकनी है जिसपे एक आदमी काला रंग का बैग रखा हुआ है।

ये काफी अच्छा दृश्य है।

यहां एक दुकान है और दुकान के सामने चिप्स के पैकेट्स है एक बूढ़ा आदमी है।

यहां पे एक घर है।